मुझे यहां पर एक बड़ा सा काउंटर का टेबल दिखाई दे रही है।

यहां मुझे बड़ा सा इलेक्ट्रिक का पोस्ट दिखाई दे रहा है।

यहाँ मे मुझे बड़ा सा बिस्तर भी दिख रहा है बिस्तर के ऊपर सफेद रंग की टॉवल रखी हुई है।

मुझे यहां सरक पर एक बाइक खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है।

और व्हाइट बोर्ड में एक आदमी खड़ा होकर कुछ लिख रहा है।

पीछे में मुझे दो ठो बड़ा बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में दो लोग खड़े होते हुए दिखाई दे रही है।

पिंक कलर और पर्पल कलर की आलमारी दिखाई दे रही है।

यहां में वुड से बना हुआ बेंच रखा हुआ है।

यहां मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे जानवरों की सिंह लगाई हुई दिखाई दे रही है।

मुझे यहां ग्रीन कलर की बास्केट दिखाई दे रही है।